कुछ छोटे-छोटे साइड में गमले रखे है जिसमें छोटा-छोटा पौधा लगा है।

और बहोत सारे यहाँ पर हिरने हैं जो इधर-उधर चलती दिखाई दे रही है।

यहाँ पर ऊपर में एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें पंकज बुक डिपो लिखा हुआ है।

और एक आदमी खड़ा हुआ हैं और --

यहाँ पर बहुत सारे मंदिरे दिखाई दे रही है।